स्कूल का फोटो है। जहां पे कुछ विद्यार्थी लोग मिल के कुछ क्राफ्ट बनाये हैं जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।

जहाँ पे फोन पे गूगल पे तरह की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे कोई भी जाके फ़ोन पे कर सकता है कुछ ओनलाईन पेमेंट कर सकता है और यहाँ पे हर तरह की सामान मिलते है ।

क्लास का फोटो है और --